ये जो हैं लकड़े के बने हुए सोफा है।

येह एक गुफा की तरह दिख रहा है|

यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे अ खड़ा हुआ है।